यह एक शॉप है जिसमें रेड कलर की कुर्सी रखी हुई है कई छोटे-छोटे पाउच टंगे हुए हैं।

सामने एक रस्सी दिखाई दे रही है।

ये एक बॉक्स है जिसमें सारा सामान पड़ा हुआ है।

यह एक सब्जी की शॉप है इसमें गोभी रखा हुआ है।

यहां सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है कई सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कई सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

एक गाड़ी ब्लू कलर की है कई सारी गाड़ियां हैं जो कि वाइट कलर की हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है।

सामने कई सारी रैक लगी हुई हैजो कि य वाइट कलर की है।

जिसमें कि खंभे ऑरेज कलर ब्राउन कलर में है।

जिस टेबल पर सामान रखा है वह ब्राउन कलर की है।

एक लेडीज गुलाबी साड़ी पहने हैं दो जेंट्स वाइट शर्ट पहने हैं।

यहां बाजू में एक जंजीर दिख रही है ।

पीछे जो तीन लड़के हैं वो येलो ब्लैक पहने हुए हैं।

सामने एक पूजा की थाली रखी हुई है।

उसके नीचे कलश रखा है भोले नाथ रखे हैं।

जिसका होटल प्लेस आनंद प्लेस एंड रेस्टोरेंट नाम है।

जिसमें से एक आदमी का ट्रीटमेंट हो रहा है

वे आदमी लेटा है वह कपड़े नहीं पहना है।

कई सारी गाड़ी रखी हैं यह एक प्रशासनिक भवन है।

यह गैलरी है इसमें कई सारे लोग घूमने जाते हैं।

इस के बाजू में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

उसके बाजू में एक ब्रेक पर ब्लू गेट लगा हुआ है।

उसके बाजू में एक छोटी कुर्सी रखी हुई है वह लड़के डॉक्टर की कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं।

इसमें ब्राउन कलर की शटर लगा हुआ है।

यहां एक न्यू शॉप की ओपनिंग हुई है।

रेड वाइट और ग्रीन कलर के बैलून लगे हुए हैं।

बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है यह नाव में बैठा हुआ है।